एक रोड है एक अ काफी सारे पेड़ लगे हुए है ऊपर छत दिखाई दे रही है और कुछ पेड़-पौधे भी गमले --

और उसके अगल-बगल सर्किट लगी हुई है कुछ सर्किट हरे रंग की है और कुछ सर्किट लाल रंग की दिखाई दे रही है।

एक गार्डन है उसमें एक पानी भरा हुआ है जिसमें सीमेंट का पूरा काम हुआ है।

रानी का मंदिर है माता रानी लहंगा पहने हुए है कमल का माला पहने हुए है।

के ऊपर तीन अ झंडे लगे हुए है और उसके नीचे भगवान शंकर जी की एक प्रतिमा रखी हुई है जो नीले रग रंग की दिखाई दे रहे है।